एक कार एजेंसी सर्विस का फोटो दिखाई दे रहा है इसमें दो वर्कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं--

ये एक बड़ी सी ग्राउंड दिख रही है और ग्राउंड पे हरी हरी ग्रास लगी हुई है और चारों पासे दीवार है इसके और बड़े-बड़े पेड़ --

और साथ में एक लेडीज जाती--

आठ कैबनेट बने हुए हैं सामने उसमें भी कप रखे हुए हैं।

ये एक घर का पिक लग रहा है जिसमें ओल्ड दीवार पे हरे कलर का पेंट हुआ है।